और यहां सब की टिकट लगाई जाती है और यहां बच्चे बुजुर्ग सब आते है घूमने के लिए ये बहोत ही अच्छा जगह है ये दिल--

कलर की कपड़े भेजे जाते है बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत जहाँ औरत से औरत मर्द ए औरत --